घर दिखाई दे रहा है नीचे हरे कलर का फर्श बिचा हुआ दिखाई दे रहा है।

काफी सुंदर घर दिखाई दे रहा है जो की काफी अच्छा लग रहा है और वह घर पर नीचे मालाओं से सजा रखा हुआ है कहीं सुंदर माला लग रही है गेंदे की फूल--

घर दिखाई दे रहा है जिसमें नीचे शटर दिए गए शटर तो बंद है पर एक शॉप खुली हुई है और ऊपर भी--

दिखाई दे रहा है जस्ट सामने और यहां पर एक शटर खुला हुआ है बस उसका चैनल गेट आधा खुला हुआ एक व्यक्ति जा रहा है साइड में गमले रखे हुए हैं।

कॉलेज का गेट दिखाई दे रहा है रोड पर और रोड के पास में एक व्यक्ति उधर ही जाता हुआ दिखाई दे रहा है मोटरसाइकिल से और एक व्यक्ति स्कूटी --

ऑटो रिक्शा दे रहे है जो की एकदम नए है।